जहां पर कुछ लड़के और लड़कियां --

इस चित्र में एक बच्चा अपने --

सभी दुकानों में रंग-बिरंगे बल्लभ --

एक मोटर साइकिल और कई स्कूटर दिखाई --

यह एक हॉल का चित्र है।

यह एक शृंगार केंद्र का चित्र है।

बिखरती हुई दिखाई दे रहीं हैं।

किश्तियों को पानी में चलाने का मजा --

इस पिंजरे को विद्यार्थियों को विज्ञान के बारे में --